यह एक कार्यालय है। इस कार्यालय के बहार एक बोहोत बड़ा खली जगह है। इस खाली जगह में बोहोत सारे पेड़-पोधे लगाए हुए है। और यह कार्यालय बोहोत ही बड़ा है। और यहाँ बोहोत सारे लोग अपने -अपने कार्य करने के लिए आते है।

इस जगह पर एक मूर्ति बनी हुई है यहाँ मंदिर के बाहर एक महिला और एक आदमी बैठे हुए हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और यह मंदिर जंगल में है और इस मंदिर के चारो और बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

यह एक नदी है इस नदी के बीच में एक पुल बना हुआ है इस नदी के किनारे पर कुछ लोग खड़े हैं ।